बगल में अलका स्वीट भी है उसमें ए_सी भी लगी हुई है।

यह एक जिला शिक्षक अधीक्षक कार्यालय है।

यहां पर बहुत सारे लाइटें भी लगी गई है।

इस मंदिर में बहुत सारे ध्वजें लगी जड़ी हुई हैं और बहुत सारी लाइटें भी दी गई हैं।

यह एक दुकान है यह दुकान में बहुत सारी लकड़ी व स्टील के सामान भी रखे गए हैं।

यह एक बिल्डिंग है यह बिल्डिंग में बहुत सारी बालकनियां दिखाई दे रही है।

बगल में भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं और काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में।

बगल में बहुत सारी लाइटिंग भी लगी गई है और रोड में एक ऑटो जा रहे --

इसके बगल में बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं।

बहुत सारी टेबल कुर्सियां भी रखी गई है।

हॉस्पिटल में बहुत सारे पंखे लगे हुए है और बहुत सारी लाइटे भी लगी हुयी है।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

तीर्थ स्थल भी माना जाता है।

यह एक चूड़ी स्टोर है।

यह चूड़ी स्टोर का नाम बाबा चूड़ी स्टोर है।

इसमें बहुत सारी लाइटें लगी हुई है और काफी अच्छी लग रहे हैं।

यह एक कॉफ़ी सेंटर है। यहाँ पर दो व्यक्ति कॉ कॉफ़ी पी रहे है और ब्रेड भी खा रहे है।

काफी ही सुंदर नजारा देखने को है।